यह किसी प्लेटफार्म से फोटो ली गई हैं इसमे एक ट्रैन भी आते जाते दिख रही हैं।

यह एक किसी फैक्ट्री या मंदिर जैसा लग रह है क्यूंकि उसमे अगरबत्ती प्रसाद और नारियल भी रखा है |

और एक खिड़की भी है जो लाल पर्दे से ढ़की हुई है। पंखा भी है जो अभी चल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ कोई है भी नहीं।

यहाँ बहुत सारे भगवान गुलदस्ता रखे हैं लगता है किसी बेचने वाले की दुकान है की आओ यहाँ से खरीद कर ले जाओ | बहुत सारे सुन्दर सुन्दर भगवान हैं |

यह मौजे भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और पीछे कुछ इंसान भी दिखाई --

यहाँ कुछ फीमेल मेल या फिर सब नहाने के लिए आए हैं जो पूरी तरह भींगे हैं और यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी हैं |

मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खाने की चीज है| इसमें दो तरह की चटनी भी है| और बहोत सा दही पेस्ट या और कुछ भी है जो बहुत सुंदर और टेस्टी दिखाई दे रहा है|

इसमें दो लंबे-लंबे बड़े-बड़े जिराफ भी हैं और वह किसी डिब्बे जाली जैसे में पैक है और नीचे बहुत सारी घास भी है।